फोटो जो है ये एक वहां पे दीवार बड़ी सी दिख रही है।

और अंदर में नीम का पेड़ दिख रहा है।

आर किसी मीटिंग की लग रही है जहा पे एक व्यक्ति जो है बाकी सभी वहा बैठे--

अलग अलग जो दवाइयां है वो अलग अलग रैक में रखी हुई दिख रही है ऊपर एक पंखा दिख रहा है।

एक सोफा जो है उसमें बैठ के--